दो खंबे खड़े हैं ये सफेद कलर का बॉक्स बनाया गया है बीच में।

रोड की लाइट का फोकस है थोड़ा बहुत--

और एक लोग उधर बैठे हैं पथरीला जगह है।

झाड़ियां भी लगी हैं पेड़ पौधे भी लगे हैं।

और तालाब भी दिख रहा है।

डॉक्टर बैठे हुए हैं वाइट शर्ट पहन के तीन काउंटर पर डॉक्टर अभी फिलहाल बैठे हैं।

काफी काउंटर पर सामान वगैरा भी रखा गया है।

चौदह जून का बोर्ड लगा हुआ है कई सारे लोग हैं।

और बहुत सारे इधर साइड लोग खड़े हैं।

ये पोखरा है पोखरे के किनारे--

और एक गेट जैसे बना हुआ है लोहे का।

और चटाई बिछा के अपना खुले आसमान में--

फ्लावर्स लीफ पत्ते वगैरह भी सजाये गए है।

वो ऊपर वेलकम टू का बोर्ड लगा है नीचे काफी सारे--

लोग भीड़ लगाए हुए हैं और रेड और येलो कलर का मैट बिछा हुआ है साइड में कार खड़ी है।

और सीढ़ियां बनी हुई हैं दोनों तरफ सीढ़ियों के--

एक किनारे कुछ खंबे खड़े हैं और बोहोत ही सुंदर स्तंभ यह लग रहा है मूर्तियों का।